और ये इसके आगे पीछे मतलब अ पेर पौधे भी हैं और थू गार्डन भी है | बोहोत ही खूबसूरत लग रहा है अपने झंडे को देखकर ।

ये दो बस है और ये दो बस इधर लगा है इसके ऊपर एक पुल है ।

सहारण घाट का जो जयनगर है लिखा हुआ।

यहाँ बहुत भीड़ लगा हुआ है और ये बिजली का तार भी है बहुत ऊंचा ऊंचा खंबा भी है। लोहा का--

ये बोहोत बड़ा ही अपना तिरंगा झण्डा है बोहोत उचा है ओर ये आसपास मे पेड़ पौधे भी हैं।

ये बहुत ही ऊँचा बिल्डिंग है ।

आय तो बोहोत ही लोग बैठे हुए है एक साइकल भी लगा हुआ है एक अ रिकसा भी जा रहा है इधर और बोहोत ही लोग है ।